कुछ लगा हुआ है एक चेयर भी पड़ी हुई है।

अ खेत की तरह है जहां पे मिसेज--

आं मैसेज दीक्षा एंटरप्राइज का बोर्ड लगा हुआ है लोहे के दो गेट लगे हुए हैं एक टूटी हुई दीवाल भी है।

छोटे छोटे पथर के टुकड़े है वहाँ पर दो लोगो की परछाई दिखाई दे रही है।

और यहां पर लोहे के गेट बने हुए हैं जो ग्रीन कलर की है दो गेट है लोहे के।

एक आदमी खड़ा हुआ है जो पैरेट कलर की।

और बोट नीले रंग की है एक आद दो आदमी और एक लेडिज खड़ी हुई है लेडिज के हाथ में एक बैग है।

और एक आदमी जो खड़ा हुआ है वो नीले रंग की टी शर्ट और पैंट पहने हुए ब्लैक कलर की।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

औ काफी सारे बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक एक फूल माला की दुकान है जहां पास सफेद--

अ फूल येल्लो वाले गेंदे की है और व्हाइट वाले--

और अ डोक्टर कुत्ते के --

ये और निरास रोगियों के लिए एकमात्र आशा का केंद्र--

सब रोगो की यही दवा ये बोर्ड लगा हुआ है लिखा हुआ है।

यह लोहे का एक ग्रीन कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

केटली वाला का वॉल्डो लगा हुआ है यहाँ पर कुछ गमले भी है।

एक साइकिल का टायर भी रखा हुआ है साइड में--

राधा कृष्ण के सर पे मुखट लगा हुआ है और गेंदे के फूल की माला भी है रंगबिरंगी माला भी पहनी हुयी है।